जिसके ऊपर लेंसकार्ट डॉट कॉम लिखा हुआ भी है।

सामने एक गुलाबी रंग का कमल भी दिख रहा है।

ई एक बैठने की जगह है।

और दो छोटे सोफे भी हैं।

कुछ मशीनें भी रखी हुई हैं।